चार चीजे रखी हुई है जो कि खाने की हैं।

कलर क्रीम कलर है और नीचे एक कालीन बिछा है जिसपे कैमरा रखा हुआ है।

वरमाला पीना रहे हैं और ऊपर से बहौत सारे बौछारें हो रही है कलरफुल रंगों की।

इस इमेज में हमें एक कैफे नजर आ रहा है जहाँ पर एक वेटर कॉफी सर्व कर रहा है यहाँ पर बहुत सारे --